दो मूर्तियाँ सफेद रंग की है। एक काले रंग की है।

अ भगवान पर अ रोशनी पड़ रही है।

बोर्ड पर एच.डी.एफ.सी. बैंक लिखा हुआ है।

अ बिल्डिंग पे बोर्ड पर सर्विस बिल्डिंग लिखा हुआ है।

योगा मैट्स बिछे हुयी हैं।

अं बाउंड्री बॉल्स बनी हैं। खाली मैंदान दिख रहा हे ।

नदी का पानी कहीं पर हरा कहीं पर काला नज़र आ रहा है।

सिक्यूरिटी गार्ड्स बैठे हुए है।

दीवारों पर खिड़कियाँ बनी हैं। पर्दे लगे हुए हैं।

गेट के बाहर बहोत सारे चप्पल जूते दिख रखे हैं।

इमेज में एक लड़का परेस करता हुआ दिख रहा है।

पानी की बॉटल के सेट्स रखे हुए हैं।

अह केले के पेड़ लगे हुए नज़र आ रहे हैं।

मंदिर में बहुत सारि मूर्तियाँ रखी हुई हैं।